यह एक फूलों की दुकान है।

यह एक लाइब्रेरी है जहां पे बहुत सी पुस्तके रखी गई है इस लाइब्रेरी के फ्रंट में एन ए बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक कलर की शर्ट पहने हैं।

यहां दो वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिनमे सामान ढोया जाता है।

जिसके सामने एक पेड़ है जो कि पतझर है उसमें एक भी पत्तियाँ नहीं हैं।